पंखे वगेरा लगे हैं छोटे से तीन | कुछ हेलमेट रखे हुए हैं गाड़ी के | काँच वगेरा लगे हुए हैं| सैलून का पूरा सामान रखे हुए हैं एकदम सैलून जैसा --